एक रास्ता है । रास्ते के बगल में एक ट्रांस्फोर्म्र लगा हुआ है जिसके ऊपर एक और छोटा सा ट्रांस्फोर्म्र लगा हुआ है ।

और सभी भूरे कलर से चित्र बने हुए है कुछ सफ़ेद कलर से कुछ नीले कलर से और सब गुलाबी कलर से एक दीवाल एक जमीन में रखा हुआ है जिस में टाइल्स लगा हुआ है।